यहाँ पे हमें बाजु में एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के बाजु में एक लाइन से बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी फोर-व्हीलर है और यहाँ पे गाड़ी को कवर से ढका गया है एक गाड़ी को और पीछे हमें--